इस चित्र मे एक नाव बनी दिख रही हैं जिसमे गणेश भगवान की--

इस चित्र मे एक महाविद्यालय के बाहर का दृश्य दिख रहा है जहाँ पर कुछ छात्राए--

जो काफी सजा हुआ है तथा जहा दो सफ़ेद रंग के सोफ़े रखे नज़र आ रहे है।

रोजमर्राह के सामान रखे हुए दिखाइ दे रहे।

यहा पर कई सारी गाड़िया आती जाती दिख रही है तथा व्यति पेट्रोल भरवाते हुए दिख रहे--

जिसमे हरी भरी घास लगी हुई दिख रही है ये मंदिर हनुमान मंदिर है।

ये मंदिर शिव भगवान का दिख रहा है जिसमे शिवलिंग की मूर्ति बनी हुई है।